यहाँ पे हम देख पा रहे है की ये पार्क है और पार्क में बहोत ही ज्यादा सुंदर सुंदर फुल है जो की रंग बिरंग का है जिस में से लाल है और पिला है।

यहां पे हम देख पा रहे हैं की एक आदमी है जो की यहां पे खड़ा है और वो जॉगिंग कर रहा है और ये पतला सा ता जाली जैसा बनाया गया हेै बैडमिण्टल खेलने वाला और सुबह का समय है पेड़ है।

टी है छोटा छोटा घास है बड़ा बड़ा घर है पेड़ है आसमान है और गाड़ी है एक दो बाइक है साइकल है और--

यहाँ पे यहाँ पे हम देख पा रहे है की ऐ बड़ा सा फिल्ड है अ- जिस में कुछ लोग है जो की खेल रहे है इधर-उधर खड़े है और पतला सा रास्ता बनाया गया है।

और हम देख पा रहे है की ऊपर सूर्य दिख रहा है और जो की चमक रहा है आसमान दिख रहा है।

यहा पे हम देख पा रहे हे की य इ बड़ा सा फिल्ड है और फिल्ड में बहोत सारे लोग हे जो की खेल रहे है और इधर हम देख पा रहे हे की छोटा-छोटा निचे घास हैं।